ये एक स्टेज नज़र आ रहा है इस स्टेज के ठीक ऊपर के साइड में कुर्सी लगी कुर्सी के ठीक पीछे के साइड में नीली कलर की दीवार बनी हुई है दीवार के उपर बैलूनस लगे बैलूनस के ठीक उपर की साइड में देखा जाये तो।